किसी स्कूल या किसी शिक्षा संस्थान के बाहर का सीन है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है इसमें कितने खंभे हैं एक दो तीन चार पांच छै सात आठ नौ दस ग्यारह --

ऐसा लगता है किसी ने नयी कार ली है लग तो रही महिंद्रा एक्स-यु-वी सी हंड्रेड सेवन हंड्रेड जो बयाह में मिली थी । बेकार गाड़ी है मज़ा नहीं आ रहा इस--